यहाँ पे तीन वैन लगी हुई है जो की एस डी पब्लिक स्कुल की वैन है।

ये कोई सए सीएनम केमिस्ट्री और ट्यूशन पपॉइंट्स जहाँ पे अ बहुत सारे बच्चे बैंच पर बैठे हुए है।

और यहाँ पे बहुत सारे लोग है जो फिल्ड में खेल रहे है सामने में टॉवर दिखाई दे रहे है और सामने कुछ मकाने दिखाई दे रही है।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

यहाँ पे ऊपर से अ पूले गई हुई है पुल के दो खंभे दिखाई दे रहे हैं।

सामने में व्हाइट कलर से छज्जा निकल के पेंट किया हुआ है और नीचे में आ ग्रील लगी हुई है जो कि ग्रील कत्थे कलर से पेंट है आगे कुछ रस्ता छोरे हुए है। --